फूल लाल रंग के हैं गुलाबी रंग दिखाई दे रहे हैं बेगनी है पिले है नारंगी है सफ़ेद रंग के भी हैं एक काला स्टूल रखा हुआ है किसी आदमी का पैर दिखाई दे रहा है और कइ फूल गंदे पड़े हुए --

यहाँ एक प्रवेश द्वारा है जिसमे बीच से सड़क जा रही है और सामने एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी बडी है। मूर्ति हल्की लाल रंग की दिखाई दे रही है।

यहां सामने नदी दिखाई दे रही है जो काफ़ी बडी है पीछे कई बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं | कुछ लोग नाव मे खड़े हुऐ हैं नाव --

सामने कई लोग दिखाई दे रहे है और फल बेच रहे है ऊपर से छत पे टीन डली दिखाई दे रही है पीछे दिवार भी दिखाई दे रही जो हलके नीले रंग की।